यहाँ एक सेलून की इमेज दिखाई दे रही है इस सेलून मे बड़ा सा काँच लगा हुआ है काँच के आगे एक टेबल लगा हुआ है।

कार के पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं कॉफी शॉप के ऊपर एक बिल्डिंग --

इस फिश की बड़े-बड़ी मूंछ आई हुई है बगल में मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो फिश के बगल में खड़े हैं।

इस इमेज में मुझे एक बुक और स्टेशनरी की शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारी बुक दिखाई दे रही--

है यहाँ पर मुझे प्रतियोगी परीक्षा की बुक दिखाई दे रही है स्कूल की बुक दिखाई दे रही है मेगज़ीन दिखाई दे रही है।

लड़का एक पाइप के पास खड़ा है और पाइप को ठीक कर रहा है।